बहुत सारा बुका दिख रहा है और बैठ --

किसी बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है यहां पर ए_टी_एम के बाहर बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं कुछ लोग ए_टी_एम के अंदर जाकर पैसे निकाल रहे हैं आजू बाजू दुकान दिख रहे हैं बहुत ज्यादातर लेडीज दिख रहे हैं।

ये किसी घर दिखा घर के आज से बहुत सारे घरा दिख रहे हैं आजू बाजू झड़िया दिख रहे हैं या किसी बारिश का मौसम दिख रहा है यहाँ।

छोटा सा हॉस्पिटल दिख रहा है बीच में कुछ लोग ठहरे हुए हैं लंबा सा हॉस्पिटल दिख रहा है।

देखो ये मार्केट दिख रही है बहोत सारे दुकाना देख रहे है यहां पर किसी मेन रोड की फोटो दिख रही है यहां पर बहोत सारे लोग है यहां पर दुकाना पे बैठते है काम करते--

कुछ काम चल रहा है यहां पर मिस्त्री लोगा काम कर रहे बहुत सारे दुकाना दिख रहे यहां पर--

ये एक थोडासा रेस्टोरेंट दिखाया यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अनाज करते हैं खाना खाते जाते हैं पर रेटिंग भीं चालू दिख रहीं--

और सामने शटर भी दिख रहे हैं अंदर से एक गाड़ी दिख रही है जो उधर आगे जा के मिलती है।

झाड़ियाँ भी अच्छे खासे दिख रहे है बड़े बड़े और यहाँ पर खम्बे के लम्बे-लम्बे दिख रहे--

और बड़े-बड़े बिल्डिंग दिख रही है और आसमान में लगता है पानी पड़ने वाला है यहां पर।

करने की मशीन में दिख रही है पर्दा छोड़ा गया खिड़की के आजू बाजू दो तीन पर्दे दिख रहे --

सबकुछ दिखाया यहाँ पर पीछे भीं दिख रहा हैं औल उपल लाइटिंग भीं चालू चालू दिकरी --

बहुत सारे लेडीज दिख रहे हैं यहां पर आज बाज बच्चे दिख रहे हैं और ऊपर खंबा दिख रहा है।

ये बड़ा सा बंगला दिख रहा है किसी का बंगला है बड़ा सा आसपास झाड़ा दिख रहे है बड़ा सा ग्राउंड भी दिख रहा है यहां पर कार पार्किंग के लिए बड़ा सा गेट भी दिख रहा--

एक छोटा सा गार्डन दिख रहा गार्डन दिख रहा है। गार्डन के बीचो बीच एक मूर्ति दिख रही है मूर्ति के पास रोशनी जाय जा रही है अच्छे रंग की रोशनी दिख रही है मूर्ति के पारो बाजू में एक आदमी ठहरा हुआ है पत्थर दिख रहे हैं। बाजू में आजू बाजू में खिड़की भी दिख रही --

बहुत सारा सामान मिलता है यहाँ पर फ्रिज का पानी थंगा पानी सब कुछ मिलता है यहाँ पर।

जाने के लिए सीढ़िया भी दिख रहे हैं ग्रास भी दिख रहा है यहाँ पर--

एक ऐसा खेत दिख रहा है। आजु बाजू कुछ पौधे लगाये गए है। बीच में गमला भी दिख रहा है। छोटा सा पैधा भी लगा है। दूध दिख रहा।

दो तीन गाए भी दिख रहे हैं बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर जमा हुई है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आजू बाजू में बिल्डिंग दिख रही है।

छोटा सा ऑफिस दिख रहा हैं यहा पर आजूबाजू बहुत सारे लोग आए और यहां पर आकर बैठते हैं यहां पर एक बैग दिख रहा है।

पीछे बड़े-बड़े झाड़ा दिख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जंगल में बहुत सारे झाड़ा दिख रहे हैं यहाँ पर--